और तालाब के पानी से लोग नहाते हैं सिचाई करते हैं और भी बहुत प्रकार के कार्य करते हैं।

यह एक डेम है और यह डेम बहुत बड़ा है | इस डेम मे काफी पैमाने में पानी है और डेम के पा -- पानी से लोग --